और सामने एक लाल करकट दिखाई दे रहा है।

और जंगले के ऊपर एक तिरंगा लगा है और यहां पे गेट के ऊपर एक गमछा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ऊपर सीलिंग पे फैन दिखाई दे रहा है और सामने गैलरा--